इसमें एक मैम है जो सभी बच्चों की ड्राइंग चैक कर रही है। बच्चों के सामने एक टेबल पड़ी हुई है जिसपे काफी सारा पेपर पड़ा हुआ हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म का कलर पर्पल है।

यह कपड़ों की दुकानें हैं जहाँ दुल्हन के लिए सारा समान मिलता है। दुल्हन के लिए लहंगा से लेकर मेकअप तक हर चीज मिल जाती है। दुकानों के ऊपर भी दुकाने हैं।

दुकान का बोर्ड पीले रंग का है जिसपर लाल रंग से दुल्हन कलेक्शन लिखा हुआ है।